रंग बी रंगी फूल दिखने मे बोहत ही अच्छे लग रहे है इनको बोरी के अंदर रखा गया है यह पर कुछ लोगों को भी देख पा रहे है।